और नीचे एक साइकिल रखी हुई है बाउंड्री बनी हुई है साइड में एक बैनर भी लगा हुआ है।

यह एक ग्राहक सेवा केन्द्र भारतीय स्टेट बैंक है जिस पर भारतीय स्टेट बैंक के नाम का बो बैनर लगा हुआ है अन्दर --

वहां हरा हरियाले और रोड है पेड़ है बड़े-बड़े पेड़ खड़े है।

सभी लाइन से और विद्युत उपकरण भी है।

एक तिरंगा लगा हुआ है ऊपर और नीचे भारत बना भारत का नक्शा बना हुआ है तीन रंगा कलर में।

रोड के किनारो पर आ बो पौधे लगे हुए है और कुछ लोग घूम रहे है।